और आसमान दिख रहा है। आसमान नीले कलर का दिख रहा है। यहाँ पर सामने हार टंगे हुए दिख रहे हैंऔर कुछ पत्ते दिख रहे हैं जो हरे कलर के दिख रहे हैं और यहाँ पर सामने एक साइकिल दिख रही है। ।

बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड का पेंटिंग कलर जो है ब्लू कलर है और इसमें वाइट कलर से कुछ लिखा गया है और बिल्डिंग की मे से कुछ इटे दिख रही है यहाँ पर एक विंडोज़ दिख रहा है एक जाली दिख रही है जो वाइट कलर की दिख रहे और यहाँ पर एक लड़का दिख रहा ह ।

मिट्टी दिख रही है। मिट्टी के साम बीच में कुछ पानी भरा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर काफी सारी घासे दिख रही है। घास हरे कलर की दिख रही है। काफी सारे पहाड़ दिख रहे हैं।

काफी सारे यहाँ पर घासे दिख रही है जो हरे कलर की हैऔर यहाँ पर आसमान दिख रहा है ब्लू कलर के और जहाँ पे आसमान में कुछ बादल दिख रहे है व्हाइट क--

एक और शॉप दिख रहा है शॉप में काफी सारे बॉक्स रखे हुए हैं सामने और यहां पर एक कांटा रखा हुआ हैं तोलने के लिए और यहां पर एक स्टूल रखा हुआ है।

काफी बड़ा बिल्डिंग दिख रहा हैऔर बिल्डिंग से कुछ भी दिख रही है। और यहाँ पर कुछ विंडोज दिख रही है। विंडो का जो पेन्टिंग है कलर वो व्हाइट कलर दिख रहा है।

बिल्डिंग दिख रहा है काफी बड़ा बिल्डिंग है। टिकट घर दिख रहा है। और यहां परजो है यहां पर सामने बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड का जो पेंटिंग कलर है वो ब्लू कलर का है। व्हाइट कलर से और येलो कलर से कुछ लिखा हुआ है कुछ रेड कलर से लिखा गया है।

बिल्डिंग का पेंटिंग कलर जो है वो रेड दिख रहा है कुछ पिंक दिख रहा है कुछ ब्लू दिख रहा है और सामने गेट गेट का जो कलर है वो स्लेटी कलर दिख रहा है।

पेंटिंग कलर रेड कलर है। उसमे वाइट और येलो कलर से कुछ लिखाहुआ है। कुछ बलुन सब दिख रहे हैं। बलुन सब ब्लू और व्हाइट कलर के दिख रहे हैं।